ये एक पार्क है और यहां पे बहोत सारा पानी भी है।

पीछे दीवाल पे स्कैनर का फोटो लगा हुआ है और बहुत सारे कलर्स के फ्रॉक हैं।

दीवार का कलर भी व्हाइट और येलो में है और बहुत शीशे लगे हुए हैं।

सामने एक लड़की है जिसने पिंक कलर का कुर्ता पहना हुआ है।

पीछे दीवार का कलर ब्लू और ब्राउन में है।